इस ईमेज में मुझे बहुत बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे सूखे घास दिखाई दे रहे हैं जो मिट्टी कलर के है।

है जो ग्रीन कलर के हैं और एक बैनर दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है और रेड कलर का है।

और एक बैनर दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर का है जिसमें रेड कलर से और ग्रीन कलर से कुछ लिखा हुआ है और कुछ लोग दिखाई दे रहा है जो खड़े हैं।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

इस इमेज में मुझे एक बड़ा-सा दुकान दिखाई दे रहा है जो क्रीम कलर का है और रेड कलर का है और येलो कलर का है।

इस इमेज में मुझे एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है और बहोत सारी मिट्टी दिखाई दे रही हैं जो मिट्टी कलर की हैं।

और कुछ घास दिखाई दे रहे हैं जो मिट्टी कलर के हैं और ब्लैक एंड वाइट कलर के है।

और एक टाटा सुमो दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर का है और ब्लैक कलर का है और कुछ घरे दिखाई दे रही है जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की है।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

और कुछ लोग दिखाई दे रहे है और कुछ तारे दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की है।

और एक टो टो दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर का है और वाइट कलर का है और कुछ तारे दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की है।